पर कुछ मछुआरे मछली बेच रहे हे और कुछ खरीद रहे हे बहत अलग-अलग तहरह की मछलियाँ हैं।

यहाँ से एक लड़का पैसा निकल कर आ रहा है और एक लड़का मशीन से पैसा निकल रहा है।

येऔर वो आदमी के कपड़े ब्लैक है।